इस चित्र में मकान दिखाई दे रहे हैं|

अंडों की ट्रे दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में मछली बाजार दिखाई दे रहा है।

जहां सफेद रंग के पीले रंग के और नारंगी रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं।

आकाश दिखाई दे रहा है।